पुतले भी खड़े हुए हैं जो नीला शर्ट और --

ये एक ऑफिस नजर आ रहा है जहां की एक बड़ी टेबल में बहोत सारे किताब और डॉक्यूमेंटस लैपटॉप --

एक आदमी पेड़ के पास खड़ा है।

और दो तीन पिलर भी नजर आ रहे हैं और--

ये एक मेट्रो स्टेशन नजर आ रहा हैं जहाँ कि--

नीले रंग की ड्रेस पहन कर बैठे हैं और तीन लड़कियां स्टेज पर खड़ी हैं।

और दूर बिल्डिंगे की भी नजर आ रही है।

ये एक शोरूम है जहां की कई लकड़ी के बेड --

और सामने की और यहां टेबल है टेबल में--

बाजू से एक स्टैंड भी रखा हुआ है कमरे--

यहां एक लड़का खड़ा हुआ है जोकि गेट के सामने--

बहोत सारी चीजे बोरियो मे रखी हुई है।

ये एक घर है जहां की छत पर एक सफेद कलर की टंकी है।

बहोत सारे किताबें रखे हैं और सामने अमूल --

ऑरेंज और झूला भी टंगा है ऊपर बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है।

और यहां रेक्स में भी कुछ डब्बे नजर आ रहे हैं।